भगवान की मूर्ति के चारों तरफ लाल और गोल्डन कलर का चित्र दिख रहा है तीन व्यक्ति बाहर खड़े हुए हैं जो भगवान की आराधना कर रहे हैं।

इस चित्र में हम एक कपड़े के शोरूम को देख रहे हैं बाहर इशटैंड में बहुत सारे कपड़े सजे हुए हैं उसमें कुछ टी शर्ट दिख रही हैं कुछ सलट दिख रही हैं।

कुछ खाखी कलर की जींस भी दिख रहे हैं बहुत सारे आदमी औरत कपड़े की खरीदी कर रहे हैं।

एक लड़के ने माथे में कपड़ा लपेटा हुआ है स किनारे साइड एक लड़का पीली कलर और नीली कलर की जींस पहने हुए बैठा हुआ है।

इस चित्र में हम एक भरी बाजार देख रहे हैं इस बाजार में बहुत भीड़ लगी हुई है चारों तरफ ऑटो रिक्शा दिख रहे हैं।

जो काले कलर के देख रहे हैं उसके पीछे एक लाल सफेद धब्बा आकृति दिख रही है।

इस चित्र में हम एक योगा क्लास देख रहे हैं लड़कियों के द्वारा योगा किया जा रहा है।

बीच में ओम की आकृति बनी हुई है बाहर उसके सोफा रखा हुआ है कुछ बच्चे भी बैठे हुए हैं।

इस चित्र में हम एक रेस्टोरेंट को देख रहे हैं रेस्टोरेंट में बहुत सारे खाने सजे हुए हैं जो इस्टील के बर्तन में रखे हुए हैं।

इस चित्र में हम एक खेत देख रहे हैं खेत के बीच में एक लड़का खड़ा हुआ है लड़का सामने की ओर चेहरा किया हुआ है।

वो केश में भगवान की मूर्ति भी दिख रही है फर्श में एक नीचे नीली कलर की कुर्सी भी रखी हुई है फर्श सफेद कलर की दिख रही है।

एक ल लाल कलर का बैग दिख रहा है पीले कलर की गिटार दिख रही है काले कलर का मियूल एलुमिनियम दिख रहा है।

किनारे साइड सफेद चद्दर भी दिख रहा है।

स्विमिंग पूल में नीले कलर का पानी दिख रहा है।

एक नीला लोवर पहना हुआ है उसकी चैन खुली हुई है एक आदमी का हाथ भी दिख रहा है।

उसके सामने भी एक भवन कई मंजिला इमारत के दिख रही है।

चारों साइड छोटे छोटे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इस चित्र में हम एक उद्यान को देख रहे हैं उद्यान के फर्स में हरी हरी घासे दिख रही हैं चारों साइड हरे भरे पेड़ पौधे दिख रहे हैं।

इस चित्र में हम एक हॉल को देख रहे हैं व्यक्तियों के द्वारा बैठ के हॉल में खाना खाया जा रहा है।

इस चित्र में हम एक उद्यान को देख रहे हैं उद्यान में ऊपर टीन का सेड लगा हुआ है टीन के सेड में रंग बिरंगे बैलून लगे हुए हैं।

लाल कलर के गमले रखे हुए हैं उसमें पेड़ लगे हुए हैं।

किनारे साइड एक लाइट का बोर्ड भी दिख रहा है।